इस तस्वीर में एक बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है इसमें घास लगी हुई है तथा बीच में पत्थर लगे हुए हैं।

इसमें एक ठेले पर एक व्यक्ति अमरुद बेच रहा है।

पीछे एक व्यक्ति उसकी वीडियो बना रहा है और कई बच्चे बैठे हुए--

कुर्सी वाला झूला है जिसमें कुछ बच्चे बैठे हुए है।

ए फोटो एक गारमेंट शॉप का है जिसमें कइ तरह के कपड़े रखे हुए हैं।

तस्वीर में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस पर भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम लिखा हुआ है।